हमें इस तस्वीर में एक इमारत दिखाई दे रही है।

वो लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं।

हमें इस तस्वीर में एक मूर्ति देखने को मिल रही है।

एक इमारत पर मूना लिखा हुआ है।

कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं।

कमरे की छत पर एलईडी लाइट्स लगी हुई है।

गार्डन में बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

गार्डन में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

हमें इस तस्वीर में एक गैलरी दिखाई दे रही है।

हमें इस तस्वीर में एक गराज दिख रहा है।

गराज की छत पर एक पंखा लगा हुआ है।

इस गैराज में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

दुकान के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है।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

कमरे की छत पर एल‌‌_इ_डी लाइट्स लगी हुई है।

तालाब में कुछ बच्चे नाव चला रहे हैं।

हॉस्पिटल के नीचे डॉक्टर विरेंद्र कुमार सिंह

हमें इस तस्वीर में एक गांव माता देखने को मिल रही है।

गाय काले और सफेद रंग की है गाय के दो सिंघ हैं।

एक इमारत देखने को मिल रही है।

हमें इस तस्वीर में एक--

पैरों का रंग हरा है।

केक के पीछे एक गाड़ी खड़ी है।

यह कमरा एक दुकान का है।

हमें इस चित्र में एक मकान देखने को मिल रहा है।

हमें इस चित्र में एक कमरा देखने को मिल रहा है।

इमारत के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं।